यहां पर काफी सारे आदमी घूमने के लिए इस पहाड़ पे आए हुए हैं।

यह विश्वविद्यालय काफी बड़ा है काफी सारे लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए --

यह तालाब में उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गयी है ।

ये नदी काफी बड़ी है इस नदी में बहुत सारे आदमी यहां पे छठी मैया का अर्घ देने के लिए नदी में आई हुई है।

डॉक्टर रोज हमें सुबह शाम योगा करने की सलाह देती है काफी सारी लड़की यहां पे --